जिन बास्केट में अलग अलग तरह के फूल के बुके बनाकर रखे हुए हैं।

एक बाल्टी भी दिखाई दे रही है।

रिबन के से घेर बनाया हुआ है।

जैसी कि डंबल्स ट्रेडमिल्स और भी बहुत सी मशीने।

उस पेट्रोल पंप के पास एक टेम्पू भी दिखाई दे रहा है।

रूम के सीलिंग में कुछ मशीन फिट की हुई है।

इस दृश्य में एक पार्क दिखाई दे रही है।

वहां मस्जिद में मैट भी बिछी हुई है और पावदान भी रखी हुई है।

और बहुत से फैन लगे हुए हैं।

जिसने अपने हाथ में एक मशीन पकड़ रखा है।

जिस कैंपस में बहुत सारी चेयर लगी हुई है।

जिस मस्जिद के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिस सड़क के दूसरी तरफ एयरपोर्ट थाना रांची झारखंड लिखकर बैनर लगाया हुआ है।

इस दृश्य में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

और दो व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

जिस सड़क की दूसरी ओर एक डी_ए_वी पब्लिक स्कूल दिखाई दे रही है।

टोकरियों में छोटी मछली है।

इस दृश्य में एक पार्क के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जैसे कि ट्रेडमिल्स डंबल्स साइकल और भी बहुत से मशीनें--